इह हमारा इलाका का एक बुक का दुकान है। इहा पर --

बुक का स्टाल है। यहां पर सड़क के दोनों किनरे पे --

पानी से छोटे-छोटे इन्सेक्ट को पकड़ के खाता है।

ये हमारे इलाका का एक खेत है।

यहाँ पर शादी भी हो डाढा है पुरोहित यहाँ पर वर वधु का --

इ ग्राउंड चारो तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है।

स्कूल बोहोत ही बड़ा है। इहाँ पर दो हजार स्टूडेंट पढ़ता है। ए एक गवर्नमेंट स्कूल है।

इस बस स्टैंड में हर वक्त बीस बासे --

ए हमारा इलाका का एक प्राचीन स्तापत हे ।

और एक छोटा सा गुहा है और गुहा के अंदर एक मंदिर भी है।

लड़कियाँ और लड़के लोग एक साथ जोगासन प्रैक्टिस करता है। इहा पर एक जोगासन गुरु भी है जो जोगासन सिखाती है।

ए हमारा इलाका का एक पिकनिक स्पॉट है।

ए हमारा इलाका का एक वेन्यू है। ए वेन्यू बोहोत ही सुन्दर है।

ये वेन्यू बहुत ही बड़ा है इस वेन्यू के अंदर --

इस शोरूम के अंदर सुन्दर-सुन्दर बेलून हैं और लाइटिंग भी है।

है मोजूद है। बोहोत जल्दी ए काम ख़तम हो जायेगा और ए बिल्डिंग भी बन जायेगा।

ए हमारा इलाका का एक ऑडोटोरियम रूम है। इस ऑडोटोरियम रूम में बैठने के लिए --

पांच सौ चियार भी हैं। इहा पर एक सुन्दर सा बड़ा सा स्टेज है।

कोल्ड्रिंक्स आइस क्रीम वगेरा भी मिल जाता है। इलाका का लोग इस दुकान से सामान भी खरीदता है।

इंस्ट्रूमेंट भी है। इस फैक्ट्री में बड़ा-बड़ा मशीन है। मशीनो से काम किया जाता है।